और यहां पर वो कुछ प्लेट में खा रहे हैं एक हाथ में मोबाइल चला रहा है।

और यहां पर एक व्यक्ति जिसने गुलाबी कलर का शर्ट और काली पैंट पहन रखी है हाथ में बैग ले के उस मकान की तरफ जा रहा है।

और उस बिल्डिंग के आगे इंटों का एक छोटा सा पिलर बना हुआ है और यहां पर लोहो का एक ब्लैक कलर का गेट है और --

सफेद दीवारें हैं और उसमें लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्सेस लकड़ी के फर्नीचर से छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए हैं।

यहां पर दुकानें बनी हुई है अ जिसमें--

पांच सात ट्रॉफी और मेडल रखे हुए हैं।

इनके आगे पानी के पीने के केन भरके भी रखे हुए हैं और यहां पर दो तीन बाइक पार्क की हुई है।

छत में लाइट लगी हुई है और यहां पर एक कांच और लकड़ी से बना हुआ काउंटर है।